यह छायाचित्र एक उद्यान का है।

इसमें कुछ बालकों को दिखाया गया है।

इस छायाचित्र में इमारत के अंदरुनी बड़े हिस्सों को दिखाया गया है।

इस छायाचित्र में एक मिष्ठान भंडार को दिखाया गया है।

इसके दाई ओर एक सफेद बुशर्ट में पुरुष को दिखाया गया है।